यह रेड कलर के बोर्ड लगा हुआ हैं। दुकान के आगे दो व्यक्ति खड़े हैं।

यहां छोटी छोटी क्यारियों में फूलों के पौधे लगे हुए हैं सभी प्रकार के अनेकों फूल हैं।

यहां बैठने के लिए भी व्यवस्था है यहां बैठने के लिए मार्बल का स्टैंड बना हुआ है।